आदमी सब है बहुत ठीक लग रहा है।

ए.टी.एम. है उसमें से पैसा निकल रहा है ओहि कोठा है मकान है।